यह एक चर्च का समारोह है जहां प्रचारक अपना प्रचार कर रहा है। उनकी दाईं ओर महिलाओं की एक झुंड है। पैंतीस से चालीस महिलाएं कुर्सी में बैठकर उनका प्रचार सुन रही है।

अ ऑटो के पास कोई व्यक्ति कैमरे द्वारा शार्क का फोटो ले रहा है। पीछे पीले टीशर्ट पहना व्यक्ति उस शार्क मछली को बड़े गौर से देख --

दोनों ओर फूलों से अच्छी सजावट की गई है। मुख्य प्रवेश द्वार पर भी बोहोत ही सुंदरता के साथ झालर का उपयोग किया --

यह किसी छोटे से कैफे का दृश्य है जहां एक व्यक्ति अपना फोटो खिंचवा रहा है। व्यक्ति ने ब्राउन या ब्लैक कलर की हूडीस पहनी है।

हेल्थ केयर डिगोनिसिस लैब का परिसर है ये ये दो तल्ला ईमारत है।

मैरून कलर की आईटेन का दाईं ओर हमें एक स्कूटी और एक काली कलर की दो पहिया वाहन खड़ी दिखाई दे रही है।

यह एक चौराहा है। चौराहे पे हम सामने पीले रंग की कार को देख सकते हैं जो रास्ते के किनारे खड़े व्यक्ति से बात कर। कार --

यह एक्सिस बैंक का परिसर है। बैंक परिसर के सामने हमे पांच छे दो पहिया वाहन खड़े नजर आ रहे हैं।

दाईं ओर किनारे पे एक व्यक्ति काले रंग का शर्ट पहने हुए मोबाइल पे देखते हुए बैंक परिसर से अन्दर प्रवेश कर रहा है।